कमान लगे हुए है किनारे साइड एक पानी की टंकी रखी हुई है काली कलर की उसमें नल भी लगा हुआ है।

कुछ भवन भी दिख रहे हैं सफ़ेद मिटी भी दिख रही है।

ऊपर पाइप भी दिख रही है ग्लास दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक उद्यान को देख रहे हैं एक महिला के द्वारा उद्यान को झाड़ू से साफ किया जा रहा है महिला ने सिर में टोपी लगाई हुई है।

नीला कलर का कपड़ा पहनी हुई है किनारे किनारे हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं जमीन में घास दिख रही है।

कुछ आदमी भी दिख रहे हैं जो कई रंगो के कपड़े पहने हुए हैं।

ऊपर दो ठो सिंधरी लगाई गयी है सिंधरी में अलग अलग चित्र बने हुए हैं।

यह बिल्डिंग एक ऑफिस की लग रही है ये बिल्डिंग को भूरे कलर से सजाया है ऑफिस के बाहर बहुत सारें कूलर और ए_सी भी दिख रहे हैं।

एक साईड में हां बैठने की व्यवस्था लाल टेबल दिख रही है।

इस चित्र में हम एक उद्यान को देख रहे हैं उद्यान में बहोत सारे पेड़ पोधे दिख रहे हैं जमीन में गमलो में फ्लॉवर लगे हुए हैं।

ऊपर आसमान से हलकी हलकी उद्यान के अंदर रौशनी आ रही है।

इस चित्र में हमें बहु मंजिला इमारत देख रहे हैं इस इमारत के बिच में एक खीडकी भी लगी हुई है जिसमें लोहे की ग्रील लगी हुई है।

चारों साईड खिड़किया ही खिड़किया दिख रही है सारी खिड़कियों मे ग्लास लगा हुआ है।

पूरा भवन सफेद कलर से पेंट किया गया है भवन के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

आदमी स्कूटी लेके कहीं जा रहा है उसने हेलमेट पहना हुआ है।

बीच में कुछ नो एंट्री टाईप का बनाया गया है किनारे साइड हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

जैसे इसने आलू रखा हुआ है तरबूज रखा हुआ है निम्बू रखा है लौकी बिंदी खीरा टमाटर सल्जम भाटा --

और भी बहोत सारे आइटम दिख रहे हैं आगे साईइड प्याज़ दिख रहे हैं सारे आइटम के निचे कपड़ा लगा हुआ है कपड़ो के ऊपर सब्जी को रखा गया है।

पॅन्ट के अंदर डाले हुए पोज बनाकर खड़ा हुआ है उसके पीछे द सिटी लिखा हुआ है।

इस चित्र मे हम एक भवन को देख रहे है भवन में कई सारे गोल गोल पिल्लर बने हुए हैं।

किनारे से आने जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है कुछ सीढियाँ भी बनी हुई हैं।

इस चित्र में हम एक मछली की दुकान देख रहे हैं दुकानदार के द्वारा बहुत सारी मछलियाँ रखी गई है।

ऊपर दो ब्लब भी दिख रहे हैं जो सफ़ेद कलर के दिख रहे हैं।

एक आदमी के द्वारा काली कलर शर्ट भी पहनी हुई है।

ऊपर से किनारे से एक आदमी लाल कलर की शर्ट पहना हुआ--

उसी के नीचे मेन गेट है मेन गेट के बाहर एक आदमी भी खड़ा है किनारे साईड --

काउन्टर के ऊपर बहोत सारे सामान फैले हुए हैं दुकान के पीछे सफेद लाईट दिख रही है।

इस चित्र में हम एक रोड देख रहे हैं रोड के दोनों तरफ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिख रही हैं।

एक किनारे लड़का दातुन कर रहा है उसके आगे एक गाड़ी दिख रही है गाड़ी के आगे सफ़ेद कमीज पहना लड़का साइकिल चला रहा है।

उसके बगल में फल दुकान दिख रही है सामने ऑटो भी दिख रही है चारों तरफ हरे-भरे पेड़ पौधे और आसमान दिख--

इस चित्र में हम एक घर को देख रहे हैं घर के--

वह कुछ डायरिया पेन बुक किताबें आदि चीजें दिख रही हैं।

इस चित्र में हम एक घर को देख रहे हैं घर के ऊपर खुली छत दिख रही है भवन के चारो साइड दो दरवाजे दिख रहे हैं।

और भी बहुत सारी चीजें जो फर्श में काली दिख रही हैं फर्श में गोटा स्टोन का काम किया गया है।

इस चित्र में हमें प्लेग्राउंड को देख रहे हैं प्लेग्राउंड पूरी तरह हरि हरि घासो से भरा हुआ है।

पेड़ की परछाई पूरी जमीन में पड रही है तो आधी धूप और आधी छाया दिख रही है।

काली गाड़ी के ऊपर एक सफ़ेद रिबीन भी लगी हुई है।

गाड़ी के बगल में एक सफ़ेद गाड़ी भी खड़ी हुई है पीछे एक बोर्ड में--

इस चित्र मे हमको एक शोरूम देख रहे हैं शोरूम के बीच के गेट में--

कुछ सामान दिख रहे हैं कुछ पाऊच भी दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक ताज महल नुमा आकृति को देख रहे हैं जो ऊपर गुम्बज में सफ़ेद और पीले कलर से दर्शा रहा है।

इस चित्र में हम एक रेस्टोरेंट को देख रहे हैं रेस्टोरेंट बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है।

किनारे साइड एक अजीब प्रकार का सेट रखा हुआ है।

इस चित्र में हम एक रोड के किनारे बसा हुआ पार्क देख रहे हैं पहले पूरी रोड दिख रही हैं रोड के चारों तरफ हरे भरे पेड़ पोधे दिख रहे है।

इस चित्र में हम एक वेडिंग हॉल को देख रहे हैं वेडिंग हॉल के अंदर दो--

इस चित्र में हम एक सलून की दूकान को देख रहे हैं एक लड़का सलून की कुर्सी पर बेठा हुआ है जिसका पीछे मुंडी से बाल दिख रहा है।

ट्रॅक्टर के किनारे एक बोर्ड में सिएट टायर भी लिखा हुआ है।

वही पर सामने दो दुकान दिख रही हैं वही आकर एक माला लगा हुआ है सामने बहुत सारी मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई हैं।

नीचे एक नेता का हाथ जोड़े हुए फोटो भी देख रहे हैं उसके सामने एक भवन देख रहे हैं।

आगे वाला आदमी हरी कलर की शर्ट पहने है पीछे वाला आदमी काली कलर की शर्ट पहना हुआ है।

इस चित्र में हम एक दुकान को देख रहे हैं दुकान के बाहर मोबाईल दिख रहा है।

ऊपर सफेद जग और कुछ किनारा भी दिख रहा है ऊपर दरवाजा भी दिख रहा --